यपण हरयां-भरयां घास च उगीं यपण हरा रंग कु पर्दा कट च लगयूं चादर च बिछयुं यपण हरयां-भरयां डाला छन हरयूं-भरयुं पहाड़ च।

यख पणी एक कुकर छह यख पणी कई सारा बड़ी बड़ी इमारतें छन कई सारा माकन छन मकानों का ऐंच सिंटेक्स छ यख मा टिन को छप्परु एक माकन ऐंच लग्युं।

यख फणि एक सफेद रंग की गॉड बुद्ध जी की बड़ी भारी की मूर्ति छ बनी यख मा जी छोटा-छोटा ढ़ूंगा भी छन।

सफेद अर लाल रंग की इमारत कर छा देखण मा वो एक चर्च छा लगण लगयुं।

यख दीवाल मा जी एक पोस्टर कर छ लग्युं यख मा एंच एक टीन कु छप्पर छा यख फण कई सारी रंग बिरंगी लाइट छन लगी यख मा जी डी.जे छ लग्युं।